फूल के हार लटके हुए दिख रहे है।

ऊपर हमें सफेद आसमान दिख रहा है।

ये ये साउथ इंडिया की तस्वीर है।